एक पोस्टर जिसमें आर के लिखा दिखाई दे रहा है और गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

यह एक पार्क है जिसमें बहोत सारे लोग नजर आ रही है।

बहोत सारे बच्चे और महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं।

आदमी ने एक टोपी पहना है।

यहां बहोत सारे बलून दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे तारे दिखाई दे रही है ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

खिड़की के सामने पर्दा भी रखा हुआ है और एक कारपेट भी बिछाया गया है।

यहां एक स्कूल है जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां बच्चों के पैरेंट्स बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं।

मूर्ति के ठीक पीछे क्या खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक लड़का बाइक के ऊपर बैठा नजर आ रहा है यहां पानी का एक बोतल दिखाई दे रहा है।

उपर आकाश जो है कोहरे से भरा दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे जल का बोतल दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के सामने छोटे छोटे पौधे भी हैं जिसमें लाइट भी नजर आ रही है।

यह एक चिल्ड्रन पार्क है जिसमें एक बच्चा ऊपर दिखाई दे रहा है।

यह एक बैलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है।